तो यहाँ अपना प्रचार कर रहा है।

पे पेप्सी का एक फ्रिज रखा --

और यह एक चर --

यहाँ बहुत सारे भी लगे हुए हैं ।

इसलिए बिहार का पता चल रहा है क्योंकि इस पे बिहार का नंबर प्लेट ल --

इस शो शॉप का नाम हैं कॉफी खुबसूरत --

धुप भी काफ़ी तेज है जिस के वजह से कुछ ल --

यह कोई पार्क का सीन हैं जिसमे बहुत सारे पेड़ -पौधे कुछ काले कुछ हरे कुछ ब्लू हैं बच्चो का फिसलने वाला इसका पता नही क्या नाम हैं इस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी रखा हुआ हैं इस पे बच्चे लोग और सयाने लोग भी इसपे खेल सकते हैं बस एक ही खेलने वाला चीज है ।

यह चर्च का सीन है जो कि इसमें इशाम्शी टांगा हुआ है जो कि ब्लू कलर के है इंजर कुछ लिखा हुआ हैं यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स भी हैं जो कि प्लांट हैं काफ़ी खुबसूरत लग रहा हैं का यहाँ पे एक भी लगा हुआ है जो कि